मेरे सामने ये एक गेराज की त तस्वीर है जहां पर एक गाड़ी की मरम्मत हो रही है।

और हम देख सकते हैं ये गाड़ी का कलर जो है मैरून कलर का है और यहां पर इस गाड़ी का काफी सारे पुर्जे खोल दिए गए हैं।

और उन पहाड़ों पर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

इस सड़क पे हम काफी सारे वाहन आते जाते देख रहे हैं जिनमें से ये ट्रक है।

और हम सड़क पर देख सकते हैं ऐसा उनको ट्रक एक इधर तरफ दूसरी तरफ मुड़ता हुआ नज़--

कुछ संगी कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।

यहां पर हमको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे हर साइज क में--

नजर आ रही है लोग पसंद कर रहे है ये उनको क्या चाहिए।

और यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर पेट्रोल पंप --